यह एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है रेस्टोरेंट में --

भवन के पास सफेद कलर का भी नजर आ रहा भवन के बाहर हरे --

यह एक परचून की दुकान दिखाई दे रही परचून की दुकान में --

कुछ व्यक्ति बैठे दिखाई दे रहे यहां पर गुटके के --

दे रही है मस्जिद बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही मस्जिद --

यह एक बीकाड़ा आइसक्रीम पार्लर दिखाई दे रहा --

यह एक गाय नजर आ रही गाय में--

यह एक श्री जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय --

यह एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा।

श्री बालाजी फोटो प्रिंट का रंग लाल कलर का दिख रहा --